रहा है जिसके--

काम दिखाया जा रहा है जहां--

दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में श्री राधा--

पेंट दिखाई दे रही हैं।

यह परफ्यूम ब्रांडेड --

पढ़ाई करवाई जाती है।

कोटक बैंक भी दिखाई दे रहा हां।

फ्रीज ले सकते है।

दे रहे हैं वे मन लगा--

और यहां वाहे गुरु जी--

दही घी रसगुल्ला पनीर--

फीमेल जनरल वार्ड दिखाई दे रहा हैं।

लोग दिखाई दे रहे--